जिसमें एक व्यक्ति अपने हेयर स्टाइलिंग करवा रहा है दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की हेयर स्टाइलिंग कर रहा है।

जहां पे लोग पान खाते हैं और सिगरेट पीते है।

यह तस्वीर किसी आश्रम की है जहां जो कि निशुल्क है इस आश्रम का नाम है सेवा भारती गांधी आश्रम।